और कुछ मकान भी दिख रहे हैं मुझे ए_सी भी दिख रही है।

मुझे एक होटल दिखाई दे रही है होटल मे कुछ लोग दिख रहे--

कुछ लोग भी दिख रहे हैं टावर भी दिख रहा है।

और कान्हा जी भी दिख रहे हैं मुझे कुर्सियां भी दिख रही है एक कारपेट भी दिख रहा है।

मुझे एक बहुत बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा है।

ए_सी भी दिख रही है लाइट भी दिख रही है ऊंचे कुर्सियां भी दिख रही हैं।

पेड़ भी दिख रहे हैं लाइट के खंभे भी दिख रहे हैं मुझे एक ब्रिज भी दिख रहा--

टी_वी दिख रही है पंखे दिख रहे हैं लाइट भी दिख रही है।

और कुछ गाड़ियां भी दिख रही है बैंक के अंदर मुझे कुछ सामान दिख रहा है।

फूल भी दिख रहे हैं रेड व्हाइट व पिंक दिखाई दे रहे--

मुझे कुछ एक्टिवा दिखाई दे रही हैं और मुझे कुछ कारपेट भी दिख रहा--